यहां पर हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।

जैसे दो व्यक्ति काले रंग के सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं।

इसके अंदर से एक हरे रंग का ट्रक भी निकल रहा है।

यहां पर लाइटें भी पड़ी हुई है।

जहां पर सामने की ओर एक गेट है जो कि बहुत पतला है।

पार्क की ओर खिड़की के बाहर पेड़ भी है जोकि हरे भरे हैं।

यहां पर एक रोड है।

और एक सुंदर सा नीले रंग का घर भी बना हुआ है।

यह हरे रंग के के नीचे बैठे हुए है।

यहां पर एक मोर है।

इसके की पंख बहुत ही सुंदर दिख रहे--

यह एक लैब बनी हुई है।

यहां पर एक हरे रंग का ग्राउंड बना हुआ है।

पीछे की ओर हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां यह फोटो एक पहाड़ों के ऊपर से खींची गई--

यहां पर लोहे की तारों को रखा गया है।

इनमें से आधी को जर भी लगी हुई है।

यहां पर की खाने का सामान रखा हुआ है।

ऊपर एक सड़क भी जा रही--